कैम्पिंग के साइड का फोटो दिख रहा है जहाँ पर टेंट लगे दिख रहे है टेंट हरे और नीले और लाल पीले कलर के दिखाई दे रहे हैं।

एक कैम्पिंग का आप लोगों को फोटो दिखाई दे रहा है जिसके अंदर बहुत सारे टेंट बने हुए लग रहे हैं जो आसमानी और नीले और हरे कलर के दिखाई दे रहे हैं कुछ दिखाई दे रहे हैं।

ये शॉप का दुकान का फोटो दिखाई दे रहा है इसमें एक शॉप बंद दिखाई दे रही है. और पास वाली शॉप खुली दिखाई दे रही है| उसके सामान रखा दिख रहा है जो प्लास्टिक का सामान दिख रहा है।